दिखाया जा रहा है यह सैलून का --

और ये नदी में बहुत सारे नाव चलते हैं और नाव के सहायता से --

आते हैं और यहाँ बहुत ही अच्छे से खेला जाता है। यहाँ बहुत --

यह एक रेंज कैंप ऑफिस है।

यहाँ पर बहुत ही आदमी ऑफिस में आते भी हैं काम करवाने के लिए।

फूल है। यह बहुत ही अच्छे --

इसको बनाने के लिए वो सारे यहाँ सामान भी रख गए हैं जैसे छड़ --